और इसमें कुछ ब्लू कलर के कुछ इस्टूमेंट पड़े हुए हैं दिख रहे हैं।

और उसके नीचे जो है पानी भरा हुआ दिख रहा है और आस-पास जो है उसके पेड़ दिख रहे हैं ।

पास में एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है और इसपे लाइटे लगी है ऊपर की साइड और एक बहोत बड़ा गेट दिख रहा है।

यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है बहोत बड़ा और आस-पास भी छोटे-छोटे मंदिर दिख रहे हैं ।

बहुत सारे अंअ बल्ब लग अंअ दिख रहे इसमें से।

बहुत सारे लड़के लड़कियां इसमें बैठे हुए दिख रहे हैं कुर्सी पे और नीचे के साइड --

वो खुला आसमान दिख रहा है और एक बोट टाइप कुछ दिख रहा है नीचे की साइड और कोई व्यक्ति एक अंदर की साइड दिख रहा है।

लाइटे दिख रही है और एक खंभा दिख रहा है और एक पेटी दिख रही है।

और लाइटें दिख रही है इसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है एक अ जालीदार सामान दिख रहा है।

और खिड़कियाँ दिख रही है कांच की ओर बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं वहाँ पर और एक फेन दिख रहा है यहाँ पर और --

माता जी की जो तस्वीर दिख रही है साइड में भी एक तस्वीर दिख रही है।